बड़े बड़े पेड़ है और एक रूम भी है सामने में और व्हाइट ब्राउन और रेड कलर्स कलर से किया हुआ है।

--और गणेश जी की दो मूर्तिये भी लगी हुई है और रेड कलर की इसकी गेट भी है और अगल बगल मे पेड़ पोधे है तार भी है।

और यहा पे लोगों काफी घूमने आते हैं और अगल बगल में हरी ब हरी बड़ी छोटी पेड़ पोधे भी लगी हुई हैं ।

जो पैंट किया हुआ नहीं है और फील्ड मे बहोत सारे लोग है क्रिकेट खेल रहे है घूम फिर रहे है।

ये तस्वीर है जिनमे काफी सारे पौधे भी लगे हुए हैं अगल बगल मे फ्लावर्स भी लगे हैं कई सारा लोग घूम घूम रहे इसमे और इसमे सा काफी --

केक के ऊपर काफी सारी बी चोकलेट बिस्कुट रखी हुई है स सजावट के लिए और दुकान में शटर भी लगा हुआ है।